और गोल्डन कलर दिख रहा है इसके आसपास बहुत सारे पेड़ भी दिख रहे हैं जो ग्रीन और ब्लैक कलर के दिख रहा है इसमें अंदर के आसपास एक जेंट्स भी दिख रहे हैं|

इस पहाड़ के आस-पास कुछ लोग भी दिख रहे है।

इस चित्र में जो कटिंग की दुकान दिख रही है इस दुकान में जो कलर पुता हुआ है वो ग्रे कलर है इस दुकान में जो पर्दे लगे हुए है वो ओ --

के दिख रहे हैं कुछ ग्रीन कलर के भी दिख रहा है। इस सड़क के आस-पास बहोत सारे पेड़ भी दिख रहे हैं और कुछ लोग भी दिख रहे हैं। इस सड़क के आसपास कुछ बिल्डिंगे भी दिख रही हैं।

इस चित्र में जो हॉल दिख रहा है इस हॉल में जो कलर पुता हुआ है वो वाइट और लाइट ब्लू कलर दिख रहा है इस --

इस टेंट के आस-पास कुछ फूल भी लगे हुए है जो रेड पर्पल येलो एंड कुछ वाइट कलर के दिख रहे है इस टेंट के आस-पास कुछ लोग भी दिख रहे है।

इस दुकान में एक बॉय दिख रहा है उसने जो कपड़े पहने हुए हैं वो रेड और व्हाइट कलर --

इस चित्र मे जो बैंक दिख रही है इस बैंक का जो कलर दिख रहा है वो गोल्डन कलर दिख रहा है।

कुछ ब्लू कलर के दिख रहे हैं। इन दुकानों के आसपास बहोत सारे लोग भी दिख रहे हैं और कुछ पेड़ भी।